बाहर एक रिक्शा है जो टूटा है और एक बाइक है जिसका रंग ब्लैक है।

ब्ल्यू ब्लैक और रेड कलर के हैं।

बॉल लगे हुए हैं जो वाइट कलर के हैं।

यहां बहुत सारे लड़के और बच्चे खड़े हैं।

बगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है जो हरा भरा है।

एक व्यक्ति बुजुर्ग बाहर है।

मैं एक चमत्कार प्रकाश की ओर घर दिख रहा है।

बगल में एक काउंटर लगा हुआ है जिसके ऊपर शीशे का कावड़ी रखा हुआ है।

दो खंबे हैं जिसप पर शो पीस फुल रखे हुए हैं।

घर बन रहा है जिसका रंग व्हाइट है और वह अभी पेंट हो रहा है।